वहां पर एक आदमी है जो कि नीली शर्ट और काला लोअर और लाल जूते पहना है जो कि चल रहा है और वहां पर आस पास बहोत ही सुन्दर लग रहा--

वहां पर एक आदमी ऑरेंज और काले रंग की टी-शर्ट पहना है जो कि टोपी भी लगाए हुआ है काले रंग की।

साइड में एक फ्रीजर है जिसके अंदर पानी कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारी चीज रखी हुई है।

और एक दीवाल पे लिखा है शुद्ध शाकाहारी स्पेशल दाल फ्राई स्पेशल कटहल--

यहां पर बहोत बड़ी बड़ी चट्टानें और बहोत बड़े बड़े पत्थर भी हैं।

यह एक दुकान है जिसकी छत सफेद रंग की है और आसपास सारा समान टंगा हुआ है।

साइड में बच्चों के डायपर वाली लड़ी भी लगी हुई है और आस पास बहोत सारा सामान लगा हुआ--

यह एक कमरा है जहां पर एक भूरे रंग का काउंटर है जिस पर डॉक्टर के औजार रखे हुए हैं।

एक बोर्ड लगा है लोहे का जोकि पीले रंग का है और लाल रंग की डिजाइन बनी है।

यहां पर एक आदमी है जो की लोटा उठा रहा है और बहुत सारे बर्तन भी रखे हुए हैं।

यह टी_वी_एस की वर्कशॉप वाला शोरूम है जो कि काले और पीले रंग का है।

उसके ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट चॉइस मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप और साइड में लिखा है माई टी_वी_एस ।

जहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे भी लगे हैं नीचे और वहां पर सफेद रंग की रेलिंग भी बनी है वा--

ऊपर दही चटनी और मीठी चटनी और धनिया के पत्ते और उससे बहोत सुन्दर सजावट की गई है।

लाल रंग से लिखा है प्रदीप ट्रेडर्स प्रिज्म चैंपियन सीमेंट दूर की सोच उ--

वहां पर एक कुत्ता लेटा हुआ है और साइड में कुछ आदमी भी खड़े --

यह एक पार्क है जिसकी एक दीवार पीले रंग की है और एक दीवार सफेद रंग की है।

यह एक नीले रंग की बिल्डिंग है जिस पे डार्क नीले रंग का बॉर्डर है और उस पे एक काला बोर्ड लगा है जिसपे सफेद रंग से लिखा है ऑफिस ऑफ डी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ।

ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर घास उगी हुई है और बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

वहां पर बहुत सारे बादल छाए हुए हैं और आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।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

यह एक लाल रंग की दुकान है जिसके ऊपर लिखा है बाल दाढ़ी स्पा एंड सैलून ।

कुछ झंडे रंगीन कलर के लगे हैं वहां पे माता रानी त्रिशूल पकड़े बैठी हुई है।